java में while loop के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप while loop के बारे में सीखेंगे इसे कैसे प्रयोग करते हैं
इस tutorial के लिए हम प्रयोग करेंगे
इस tutorial के लिए आपको java में relational operators का ज्ञान होना चाहिए
यदि ऐसा नहीं है तो उचित tutorials के लिए कृपया हमारी निम्न website पर जाएँ
यहाँ while loop के लिए structure दिया गया है
इसके दो भाग हैं
एक loop running condition और दूसरा loop variable है
अब एक उदाहरण देखते हैं eclipse पर जाएँ
यहाँ हमारे पास शेष code के लिए आवश्यक eclipse ide और skeleton है
मैंने whiledemo नामक एक class बनाया है और main method को इसमें शामिल कर दिया है
हम एक while loop का प्रयोग करके 1 से 10 तक संख्याएं print करेंगे type करें int n = 1
variable n हमारा loop variable होगा
type करें while parenthesis में n less than or equal to 10 ब्रैकेट खोलें और बंद करें
यह condition लूपिंग running condition कहलाती है
इसका अर्थ है कि loop तब तक चलता रहेगा जब तक condition true होगी
हमारे case में यह तब तक चलता रहेगा जब तक n की value 10 से कम या बराबर है
और यह केवल तब रुकेगा जब n की value 10 से अधिक हो जाएगी
loop के अन्दर हम n की value print करेंगे
system out println n; और फिर जोड़ें n = n + 1;
इस प्रकार पहले 1 printed होता है और फिर n की value 2 हो जाती है
फिर loop condition की जांच की जाती है
चूँकि यह true है 2 printed किया जाता है और n 3 हो जाता है
और इसी प्रकार loop तब तक बढ़ता रहता है जब तक 10 printed हो जाता है उसके बाद n 11 हो जाता है और condition true नहीं होती और loop रुक जाता है
अतः कार्यान्वित code को देखते हैं
सेव और run करें
चूँकि हम देख सकते हैं 1 से 10 तक संख्याएं printed हो जाती हैं
अब हम 50 से 40 तक संख्याएं print करेंगे
अतः हम 50 से शुरू करते हैं n = 1 को n = 50 से बदलें
और हम 40 तक जायेंगे
दूसरे शब्दों में जब तक n 40 से greater या equal है अतः condition को बदलकर n 40 से greater या equal है करें
और चूँकि हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर loop कर रहे हैं इसलिए हमने loop variable को घटाया है
अतः n = n + 1 को बदलकर n = n1 करें
सेव और रन करें चूँकि हम देख सकते हैं 50 से 40 तक संख्याएं printed हो गई हैं
अब हम 7 के पहले 10 multiples print करेंगे
ऐसा करने के लिए हम 7 से शुरू करते हैं
अतः n = 50 को बदलकर n = 7 करें और फिर 70 पर समाप्त करें
condition को बदलकर n लैस दैन equal to 70 करें
इस प्रकार हम यह सुनिश्चित करते हैं कि loop 70 पर रुक जाता है
multiples प्राप्त करने के लिए loop variable में 7 से वृद्धि करेंगे
अतः n = n1 को बदलकर n = n + 7 करें
इस प्रकार पहले 7 printed किया जाता है और फिर n 14 हो जाता है और इसी प्रकार 70 तक चलता रहता है सेव और रन करें
चूँकि हम देख सकते हैं 7 के पहले 10 multiples printed हो जाते हैं
sum एक संख्या के अंकों का योग ज्ञात करने के लिए भी while loop का प्रयोग कर सकते हैं
देखते हैं कि ऐसा कैसे करते हैं
पहले main method को clear करें
int n equal to 13876 यह number है
फिर int dsum equal to 0 अंकों के लिए variable dsum सिंबल के साथ में अंकों का योग शामिल होगा
type करें while n greater दैन 0 परेन्थेसिस खोलें और बंद करें
इस condition को प्रयोग करने का कारण एक while लूप में स्पष्ट होगा
अंकों का योग प्राप्त करने के लिए हमें पहले अंक प्राप्त करना चाहिए
ऐसा करने के लिए हम modulo operator का प्रयोग करते हैं
फिर dsum = dsum + n % 10 अतः हम इकाई अंक प्राप्त करते हैं और इसे dsum में जोड़ देते हैं
इसके बाद हम 10 से विभाजित करके अंकों को हटाते हैं n = n/10
अतः जब loop प्रथम बार संचालित होता है dsum 6 होगा और n 1387 होगा
और जब loop दूसरी बार रन होता है तो dsum 7 और 6 का योग होगा जो कि 13 है और n 138 हो जाएगा
इसी प्रकार जैसे जैसे loop बढ़ता जाता है n से and हटते जाते हैं और अंततः
n zero हो जाता है इसके बाद condition n greater दैन 0 false हो जायेगी और loop रुक जाएगा
अतः add एक print statement जोड़ते हैं
system out println dsum
अब क्रियान्वित code देखते हैं सेव और रन करें
जैसा कि sum देख सकते हैं अंकों का योग जो 25 है printed हो गया है
इस प्रकार एक while loop जो programming में एक सबसे मूल constructs constructs है प्रयोग किया जा सकता है
यह हमें इस tutorial की समाप्ति पर लाता है
इस tutorial में हमने सीखा
इस tutorial के लिए एक नियत कार्य के रूप में निम्न समस्या को हल करें
एक संख्या दी गई है एक while loop का प्रयोग करते हुए इसके व्युत्क्रम reverse की गणना करें उदाहरण: 19435 => 53491
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न link पर उपलब्ध video देखें जो spoken project tutorial को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छी bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके देख सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org को लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद